कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनके दीवारों का कलर ब्लू ग्रीन वाइट दिखाई दे रहा है और कुछ ब्लैक कलर के पोस्टर दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ व्यक्ति देखाई दे रहे हैं।

और कई सारे ब्लू व्हाइट कलर की लाइट्स दिखाईी दे रही है यहाँ पर कई सारे व्यक्ति दिखाईी दे रहे है एक कैमरा दिखाई दे रहा है।